यहाँ पर एक मॉल है जो की मॉल में काफी सारे--

और जो की अ शादी का जो मण्डप है वो डेकोरेट है यहाँ पर गैदर कसेडिक टाइप डेकोरेटेड है एक चेयर रखी हुई है।

एक अंकल है जो फिश बेच रहै है मार्केट है कुछ लोग निकल रहै है वहाँ से छाता लगा है।

और दो लड़के है जो की एक सेल्फी ले रहा है तो एक पोज़ दे रहा है।

और मूर्ति बहुत बड़ी हैं।

और वो फोटो क्लिक कर रहा है बैठ के और बहोत अंधेरा है।

अ एक अंकल ठेला लेके निकल रहे है कुछ गाड़ियों से--

यहाँ पर अ शादी हॉल टाइप है।

डेकोरेट है येलो और वाइट कलर के फ्लावर्स से--

यहाँ पर एक शॉप है।

बहुत सारी फिश रखी हुई है।